और यहां पर कुछ सीढियाँ दिख रही है जो ग्रीन कलर की दिख रही है और आसपास में कुछ पेड़ दिख रहे हैं पेड़ भी ग्रीन कलर के दिख रहे हैं यहां पर कुछ बाउंड्री वगैरा दिख रही है और आसमान दिख रहा है आसमान व्हाइट कलर में दिख रहा है काफी सुंदर --

काफिसार लड़कियाँ दिख रही है किसी ने चश्मा पहन रखा है किसी ने ड्रेस पहन रखी है अलग अलग तरह की जैसे कि कुछ लड़के भी है यहाँ पर और एक पैर के ऊपर खड़े हैं सभी यहाँ पर किसी ने रेड कलर पहन रखी ड्रेस किसी ने येलो कलर की --

कुछ कर देख रहे छोटे छोटे एक लड़की देख रहे हैं कुछ खास दिख रही हैं घास ग्रीन कलर की दिख रही हैं आसमान नीला आसमान व्हाइट कलर में दिख रहा हैं और काफी जोर से पहले भी देख रही हैं घास खांसी ज्यादा मात्रा हैं।

एक थाली रखी हुई दिख रही है थाली के अंदर दो स्पून रखे हुई दिख रहे है और यहां पर खाने के लिए कुछ रखा हुआ दिख रहा है और अलग-अलग तरह के डिश रखे दिख रही है और यहां पर टेबल है। टेबल --